पीला कलर के पन्नी बिछाया हुआ है हरी हर कलर का है ये पंखा वंखा सब है।

इधर बहोत सारा आदमी खड़ा पिला कलर का रखा है हाथ में झोड़ा बैग तंगले है व्हाइट कलर कपड़ा पहना हुआ गमछा है।

बैंक है बैंक के बाहर आदमी सब खड़ा है इधर पैसा छुड़ाने के लिए आदमी बहुत सारा आदमी से--

गेट लगा हुआ है इधर पेड़ है साइड में रोड है बहुत सारा चीज सा देखने के लिए मिल रहा है देखिए--

देखिए आदमी खा रहा है साइड में इधर बहुत--

इधर आदमी बहोत सारा खाड़ा है लेडिस पर्स टांगी हुई है उधर से आदमी एक जूत्ता पेहन के आ रहा है।

दु गो फोटो पोस्टर लगा हुआ है आदमी के देखने के लिए--